वहां सामने हमें एक बड़ा सा मिट्टी का मैदान दिख रहा है।

यहां हमें एक रेत का बड़ा सा मैदान नजर आ रहा है।